यहाँ पे बहुत ही सारा छड़ वगैराह भी है और यहाँ बहुत ही डरग्स भी है ।

और बहोत टाइल्स वगैरा से काम किया गया है झालर वगैरा सब लगा हुआ है और बहोत ही स्टैंडर्ड भी लग रहा है।

और यहाँ पे लाइट भी लगे हुए हैं | यहाँ गा बगल में एक हाइवा भी खड़े हैं |